इनमे दो तीन गाड़ी है गाड़ी का कलर रेड है। उसके ऊपर पीला व्हाइट --

उसके आगे झाड है एक खंबा लगेसो है बहुत सारे झाड है उसके आगे रोड है रोड बहुत साफ है।

इस चित्र मे पार्क है पार्क मे टेबल रखे से व्हाइट कलर के इसके बाजू मे छोटोसा हरासा झाड है उसके बाद बोर्ड है फिर--

इस चित्र मे एक नदी है। नदी का पानी काला दिख रहा। उस के आजूबाजू झाड है झाड थोड़े गुलाबी दिख रहे और हरा दिख रहा है।